ये तस्वीर एक दीवाल की है जिसपे पेंट नहीं हुआ है ये दीवाल ईटो की है इसके ऊपर एक पीली सफ़ेद रंग की घडी भी रखी हुई है।

छोटे बड़े एक शेड जिसकी छत टायकून शेप में है उसमें काफी सारे पिल्लर्स लगे हुए हैं एक चबूतरा बना हुआ है इस पत्थर का--

इस तस्वीर मे एक बड़ा सा एंट्री गेट है जिस के ऊपर दो आंखे एक नाक भी बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक मैदान है जिसमे काफी सारे टेंट लगे हुई है कुछ टेंट कलरफुल है जिसमे रंग बिरंगे पट्टे है और उसके जस्ट साइड में प्लास्टिक के शेड वाले लगे हुई है।

यह तस्वीर एक स्टेशन की है कि बाहर रेल की पटरी दिख रही है कुछ लाइट्स लगी हुई है ट्यूबलाइट भी लगी हुई है ऊपर लोहे का शेड भी डाला हुआ है कुछ आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने बैग टांग के रखा हुआ है।

और ऊपर एक ब्रिज है जो की स्टेशन का नजर आ रहा है जो की ब्लू और व्हाइट कलर का पुता हुवा है कुछ पेड़ पौधे लगे है दीवाल भी यहा पर है जो की पीले रंग की पुरानी है।

ये तस्वीर एक स्टेशन की हैं जिस मे काफी सारी सेटेलाइट भी हैं रात का अंधेरा हो रहा हैं कुछ सीढ़ियां नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर एक रेलवे ट्रैक की है जिसमें लोहे के खंभे लगे हुए हैं कुछ सीढ़ियां हैं यहां परऔर पीछे कुछ बड़े सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं एक फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का।

लोहे के खंभे हे एक सेटेलाइट लगी है और ऊपर काफी सारे तार भी दिख रहे है ऊपर आसमान है जो की पूरा सफेद है।

ये तस्वीर है जिसमें एक मैदान है जिसमें काफी सारी घास लगी हैदो पेड़ लगे हुए--

ये तस्वीर एक दूकान की बहार की है जिसके अंदर काफी सारा सामान किराने का रखा हुआ है बहार काफी सारे छिपसो की पैकेट्स कुरकुरे के पैकेट्स स्नैक्स के पैकेट्स रखे है कुछ खोके रखे हुई है।

इस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की अ येलो और रेड कलर का है इसपे येलो कलर से लिखा हुआ है बाहर लाइट जल रही है।

ये तस्वीर एक मैदान की है जिसमे काफी सारे आदमी खड़े हुए है कुछ ब गड्डिया भी ख़ड़ी हुई है सिडिया है समझ की इसके पीछे टंकी भी है एक और कुछ पेड़ पौधे भी लगे ---